लगा हुआ है। जिसमें इनकी छाया दिखाई दे रही है।

इसमें एक आदमी प्रवेश करने की प्रयास कर रहा है। ये गुफा में बहोत अंधेरा दिख रहा है जबकि गुफा के बाहर साइड किसी चीज से प्रकाश डाला जा रहा है। गुफा अंदर की तरफ अंधेरी है।

इस चित्र में हमें किसी इमारत का हिस्सा दिखाई दे रहा है ये इमारतें आसपास बनी हुई है जो कि काफी ऊंची-ऊंची है।

इंस इन इमारतों में बहोत सारे फ्लैट होते हैं। जिसमें लोग रहते हैं। ये इमारतें कई मंजिलों की होती हैं और जिनमें बालकनी होती है। इस बा इसमें भी हमें ऐसी इमारतें दिख रही --

इस तरह के मनोरंजक वाले खेल बच्चों को बोहोत अच्छे लगते हैं और उद्यान इनके लिए सबसे अच्छी जगह है उद्यान में जाकर बच्चे यही खेल खेलते हैं।

सामने उसका हेलमेट भी रखा है इस आदमी के जहाँ पर खड़ा है उसके ऊपर किसी प्रकार की झोपड़ी बनी है।